ये ग्राउंड की ऐ किया हुआ है देखने में बहुत अच्छा --

यहाँ बहुत सारा बिल्डिंग हैं बहुत बड़ा-बड़ा बिल्डिंग हैं देखने में बहुत सुन्दर भी लग रहे हैं और बॉल भी है।

मैदान भी है गाड़ी उडी सब कुछ है यहाँ देखने के लिए एकदम बहुत अच्छा है मकान भी है बड़ा बड़ा --

यहाँ हम लोग छठ पूजा मनाते हैं छठ पूजा हम लोग बहुत अच्छे से मनाते हैं हमलोगो के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं।